काफी एक घेरे में पानी है।

और दो आदमी एक टेंपो से सामान निकाल रहे हैं।

कैन है और एक आदमी चेयर को अच्छे से देख रहा है।

एक बच्चा और एक औरत खड़ी है।

सुंदर हैं और एक स्टैचू भी बना हुआ हैं।

इस तस्वीर में य एअ क काफी बड़ा पोस्टर लगा पोस्टर पे--

कुछ गैस के फोटो लगे हुई है दुकान में एक पंखा लगा है।

सामने रिसेप्शन टेबल पे कम एक कंप्यूटर है और चेयर लगी है पास पे एक मशीन भी है।

इस तस्वीर में एक छोटी सी दुकान है।

इस तस्वीर में एक पुलिस स्टेशन नजर आ रही है जिसका बाहर काफी बड़ा बोर्ड है उसपे उसका नाम लिखा हुआ है।

बाहर काफी तीन चार बाइक खड़ी है। अंदर भी कुछ गाड़ियां खड़ी है कुछ पेड़ लगे है।

और एक दो शूज फ्लो अह फर्श पे पड़े हैं।

ये तस्वीर को बड़े मॉल की है जिसमें काफी--

और भी काफी सामान है जिसमें एक लड़का खड़ा है सामान को देख रहा है।

जगह पे काफी लोग इकट्ठे हैं और छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं।

एक लड़की ने अपना फेस कवर किया है और फोन पे बात कर रही है पास में से एक आदमी बाइक से गुजर रहा है।

इस तस्वीर में दो कारी ती दो तीन कारीगर अपना काम कर रहे हैं कुछ सरिया बजर सीमेंट दिखा रहे हैं और उसको पलस्तर कर रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ माइक स्पीकर ब्लूटूथ --

और दीवार पे काफी बड़ा पोस्टर लगा है उस पे उनका नाम फोन नंबर लिखा है।

और छोटा सा दरवाजा दरवाजे के पास थोड़ा सा कचरा भी बिखरा हुआ है।

इस तस्वीर में एक स्टेज है स्टेज पे काफी बड़ी डी_वी_डी लगी है जिसपे म्यूजिक प्ले हो रहा है काफी लाइटिंग भी ऑन है।

और का एक बड़ा पेड़ भी लगा है।

सात ट्रक है जो कूड़ा फेक रहा है और पास में एक बड़ा ऊंट है और काफी बड़े बड़े पहाड़ भी हैं।

पास में से एक सड़क गुजर रही है सड़क की दूसरी साइड एक अ सरकारी दफ्तर है जिसमें काफी अच्छा गार्डन बना हैं।